पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

ते हैं बैठते हैं घूमते हैं और चले जाते हैं बहुत ही सुंदर नजारा --

यह एक ऑफिस जैसा नजर आ रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में ढोसा बना हुआ है।

यह एक लड़की रहती है यहां --

है यहा है एक कमरा है।

यहां पर खाना चलरा दो पंखे लगे हैं।

राइ राज मेडिकल हॉल यहा पर व्यक्ति आते हैं।

यह एक गिफ्ट हाउस एंड कार स्टोर ।

और ये जंगल में पूरी यहा आस पास बिच में जो जंगलो के बिचम बिच एक जंगल निकलता नजर आता है।

एक का आस पास बड़े - बड़े बीलडिंग एवं बहोत उच्चे - उच्चे पहाड़ नजर आते हुए दिखाई --

बहोत ही सुंदर नजारा है।